इस शोरूम के कर्मचारी शोरूम की साफ सफाई कर रहे है शोरूम के अंदर का दृश्य काफी खूबसूरत प्रतीत होता है।

स्टेज के पीछे काले रंग के कपड़े की एक बाउंड्री मारी गई है।

यहां सामने एक चार पहिया वाहन खड़े हुए दिख रही है।

तत् पश्चात रोड पे कुछ वाहन भी चलते हुए नजर आ रही हैं।

यह एक बगान का दृश्य प्रतीत होता है।

यह एक रेडीमेड चॉकलेट केक का दृश्य है।

यहां बहुत सारे बच्चे नृत्य करते दिखाई दे रहे हैं।

सारी बसें एक ही कंपनी तथा एक ही मालिक की प्रतीत होती हैं।

मैदान में कई सारे गमले और पेड़ पौधे भी हैं।

इस दुकान के पीछे भी कई घरे प्रतीत होती है।

भी बहोत ही साफ सुथरा नजर आ रहा है।

बाईं ओर एक अ एक व्यक्ति भी बैठे दिखाई दे रहा है।

इसके हर कम्पार्टमेंट में ए_सी लगा हुआ दिख रहा है।

पुरी रोड भी काफी साफ सुथरी प्रतीत होती है।

इसका फर्श भी काफी साफ सुथरा लग रहा है।

दुकान आधुनिक डिजाइन के साथ अच्छी तरह से रोशन दिखाती हैं।

दुकान में कई प्रदर्शित काउंटर और शोकेस के साथ एक विशाल लेआउट है।

यह एक मिठाई दुकान का दृश्य है।

मिठाई वाले काउंटर के बगल में भी अन्य कुछ काउंटर हैं।

अलमारियां रंगीन कैंडी और स्नेक से लेकर मसालों और मसालों के जार तक विभिन्न उत्पादों से भरी हुई है।

इस तस्वीर में एक सड़क दिखाई दे रही है जो कि एक पुल से गुजरती है।

तस्वीर में प्रमुखता से दो शहनाज हुसैन उत्पाद दिखाई दे रहे हैं।

बाई और पुलिस बैरिगेट भी दिखाई दे रहा है।

यह एक नेत्रालय भवन का दृश्य है।

भवन का बाहर से एक्सटीरियर काफी खूबसूरत प्रतीत होता है।

इसके बगल में खपड़े का छोटा घर है जहां कुछ खपड़े टूटे हुए प्रतीत होते हैं।

आसमान में काफी फॉग जमी हुई है।

यहां कई लोग भी दिख रहे हैं।